यहां देख लीजिए आप ये गार्डन है और गार्डन मे आप पीछे देख सकते है काफी सारे रूम बने हुए है।

और यहां पे खाना चल रहा है और आप देख सकते हैं सभी चेयर पे आराम से बैठे हुई है और अपना अपना खाना खा रहे हैं और आपस में बातचीत भी कर रहे --

यहां आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हमें खुली खुली सी सड़क नजर आ रही है और उसके आगे हमें एक बहोत ही बड़ा घर नजर आ रहा है।

यहां पे बहुत ही प्यारी प्यारी सी चांदी की सुंदर सुंदर चीजें बनी हुई हैं और आस पास भगा भगवानों की मूर्ति भी है।

यहां आप देख सकते है ये एक रूम है।

यहां देखिए हमें बहोत बड़ा सारा एक हाल नजर आ रहा है हाल में आप देख सकते हैं काफी सारी बेंच लगी हुई है और ग्रीन कलर की --

और ऊपर आप देख सकते है पेड़-पौधे हुए नजर आ रहे है और ऊपर जो बादल है बहोत ही प्रेटी लग रहे है और सामने से फोर-व्हीलर आ रही है।

कई घर है और यहां पे आपको देख सकते हैं उन्होंने अच्छे से एक सामने लगा रखी है उसमें हमें सब नजर आ रहा है।

मैन हैं वो अपना वर्क कर रहे हैं आराम से सीटिंग सिस्टम है यहां पे चेयर पे बैठकर अपना वर्क कर --

और यहां पर हम देख पा रहे हैं जैसे कि हमें एक शेर दिखाई दे रहा है और ओ की बंद कर रखा है उसे और आसपास पेड़ पौधे हमें दिखाई दे रहे --

और आप देख सकते हैं वहां पे कंप्यूटर ऑन है और ये जो जेंट्स है इनका फेस हमें क्लियर नहीं दिख रहा है बट ये हमारी तरफ देख रहे हैं आप खुद देखिए।